और उसका एक बहोत बड़ा गेट दिख रहा हैं जो ब्लैक और व्हाइट कलर का हैं।

ये दो गेट दिख रहे हैं लाइट ब्राउन कलर के--

एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी खड़ी है और शर्मा ऑटो डील का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ।

बिल्डिंग्स दिख रही है जो येलो कलर की है।

रोड है लंबा जिसपे एक लाइट जल रही हैं।

अंदर काफी सारे गेट दिखाई दे रहे हैं मुझे।

ये एक प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा है जहां पर बच्चे खेल रहे हैं।

मलबा काफी सारा रखा हुआ है कंस्ट्रक्शन साइट है ये एक।

एक बड़ी सी टेबल और एक चेयर रखी हुई है चेयर पर कंप्यूटर रखा हुआ है।

एक छोटा पहाड़ भी दिख रहा है।

एक अलमारी में बहुत सारी शील्ड्स दिख रही है।

सोफा रखे हैं एक बड़ा सोफा है दो छोटे सोफे हैं जो लकड़ी के सोफे हैं।

यहां पे सलाद लिखा हुआ है।

लोक सेवा केंद्र मुड़वारा कटनी ग्रामीण की यह बिल्डिंग है।

और बलून लगे हुए है रेड और व्हाइट कलर के।

यह एक कपड़ों की दुकान है। इसमें लोहे की चार अलमारियां रखी हुई है।

यह एक ड्राई क्लीनर्स की शॉप हैं यहां पे कपड़े ड्राई क्लिन होते है।

यह एक सोसायटी बिल्डिंग है यहां पे टाइल्स लगी हुई है।

एक ब्ल्यू कलर का बॉक्स भी रखा हुआ हैं।

एक लाइट का खंभा दिख रहा है सूरज दिख रहा है।

टी सेन्टर का बोर्ड लगा हुआ है।

दो गिलास चाय के बने हुए हैं और एक कप चाय का बना हुआ है।